यह एक जंगल हैं यह एक सुंदर जंगल हैं। यहाँ पे आदमी दूर-दूर से आते हैं।

आ दो सौ साल पुरानी है इसके पीछे एक आदमी जा रहे हैं वो आदमी के हाथ में बैग है।

यह एक स्टेडियम है यह सुंदर स्टेडियम है यहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं।

यह सभी ताजा है और स्वस्थ भी उसके खाने से मिलता है।

यह एक पहाड़ है यह पहाड़ बहुत अच्छा है।

यहाँ पहाड़ के नीचे पानी है। यह पानी के बगल में एक गाय है। यह पहाड़ बोहोत हरा-भरा है।

यह मैदान बहुत ही अच्छा है यहाँ पे क्रिकेट मैच होते हैं।

यह स्कूल बहुत ही बड़ा है यह स्कूल पिंक कलर का है।

यह बैंक बहुत ही सुंदर है। यह बैंक बहुत ही बड़ा है ।

यह एक मछली है। यह मछली देखने में बहुत अच्छा है।

यह एक पंचायत भवन है यह पंचायत भवन बहुत ही सुंदर है।